इस तस्वीर में आप एक चर्च की तस्वीर को देख रहे है प्रोग्राम का आयोजन हुआ है इसलिए लोग यहाँ पे आ गए है।

चारो तरफ हरियाली है बहुत साड़ी नाव भी रखी हुई है और हरियाली बहुत आज मनमोहक दिख रही है।

तस्वीर में आपको चारो तरफ हरियाली हैं और कुछ --